एक्सरसाइज करने वाली मशीन्स भी--

देखने में हमें ये कोई रिसॉर्ट या पैलेस --

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नैपकिन और मेनू दिखाई दे रहे हैं।

ये कोई बेकरी भी हो सकती है।

इसका नाम अह फैमिली सैलून भी हो सकता है।

इस पिक्चर में हमें एक बस दिखाई दे रही हैं।

डॉपलर डिजिटल एक्स रे लिखा हुआ नजर--

देखने में हमें ये पैलेस या रिसॉर्ट --

डेकोरेशन भी की गई दिखाई दे रही हैं।